और यहां पर कुछ लोग नहाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

ये घर है घर के बड़ बाहर दो तीन मोटरसाइकिल खड़ी हैं कुछ लोग मोटरसाइकिलों पे बैठे हैं।

और यहां पे एक लोहे की जाली लगी हुई है और कुछ खंभे लगे हैं खंभे के ऊपर से कुछ तार गए हुए हैं।

और नीचे नीला पेपर पड़ा हुआ है उसी के ऊपर ढेर सारे खिलौने रखे हुए हैं।

इसपे लाइटें वगैरह भी पड़ी हुई हैं बलूंस भी सफेद और रेड कलर के लगे हुए हैं।

और इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

इसमें छोटी छोटी हरी हरी घास है कुछ आदमी टहलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

ये एक स्कूल है यहां पे बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

अंदर सोफा पड़ा हुआ है और बहोत सारे पेड़ पानी भरा हुआ है।

यहां पे बहुत बड़ी बहुत सी साइकिल खड़ी हुई है।

ये घर है घर दे ये एक घर जंगल में बना हुआ है।

यहां पे बहोत सारा सामान भरा हुआ और ये कम इसमें लाइट वगैरा लगी हुई हैं।

दुर्बल ऑटो स्टैंड के क्लीनिक है।

बहुत सारे पेड़ छोटे बड़े हैं कुछ लाइनें वगैरा और पोस्टर वगैरा लगे हुए हैं।

और यहां पे एक मोरंग के ढेर लगा हुआ है।